और कुछ झूले दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक व्यक्ति लेटते हुए जिम करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक व्यक्ति पुल पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पुल के निचे नदी बहती हुई दिखाई दे रही है |

और सड़क दिखाई दे रही है कुछ हरी भारी घास और बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेज बनाई गई है जहाँ पर ऊपर बहुत सारे महिला व पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ पर हमे सामने कुछ मोटरसाइकिल जीप और ऑटोरिक्शा दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक पंडाल लगया गया है जिसे फूलों से वा रंग-बिरंगे पर्दो से सजाया गया है।